केटच में settings कन्फिगर करने पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप सीखेंगे कि:
प्रशिक्षण के स्तर को कैसे बदलें typing गति को व्यवस्थित कैसे करें
shortcut कीज़ को configure कैसे करें toolbars configure कैसे करें typing metrics कैसे देखें
यहाँ हम उबंटू लिनक्स 1110 पर केटच 171 का इस्तेमाल कर रहे हैं
चलिए के टच खोलें
हम level 1 पर हैं अगले स्तर पर चलते हैं जो 2 है
प्रशिक्षण के स्तर को 2 पर बढ़ाने के लिए level field के आगे ऊपरी त्रिकोण चिह्न पर click करें
ध्यान दें क्या होता है जब हम स्तर को 2 में बदलते हैं
teachers line के अक्षर बदलते हैं!
new characters in this level field के अंदर दर्शाए जा रहे new characters को देखें यह भी बदल गये हैं
यह अक्षर हैं जिनका चुनित स्तर पर अभ्यास करना है
अब typing शुरू करें
अब एक अक्षर type करते हैं जो teachers line में नहीं दर्शाया गया है
student line लाल में बदल जाती है
और आप क्या देखते हैं
correctness field में दर्शाया जा रहा प्रतिशत घटता है
backspace दबाएँ और गलती मिटाएँ
अब training options को निर्धारित करना सीखते हैं
training options क्या हैं
training options का इस्तेमाल हम typing गति और विशुद्धता typing विशुद्धता का प्रतिशत के मापदंडों को बदलने के लिए करते हैं
किसी विशिष्ट स्तर पर टाइप की जाने वाली लाइनों की संख्या को भी हम अपनी रूचि के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं
मुख्य menu से settings चुनें और configure ktouch पर click करें
configure – ktouch dialog box प्रदर्शित होता है
configure – ktouch dialog box के बाएँ panel से training options पर click करें
दायाँ panel अब विभिन्न training options दर्शाता है
typing speed correctness और workload के लिए upper सीमा निर्धारित करें
limits to increase a level के नीचे:
typing speed को 120 characters per minute correctness को 85%
अंततः workload को 1 निर्धारित करें
इसका मतलब है कि हमें प्रत्येक स्तर पर level एक line पूरी करने की आवश्यकता है
हम फिर स्वतः ही अगले स्तर पर चले जाएँगे
यदि आप एक स्तर पूरा करके ही अगले स्तर पर जाना चाहते हैं तो complete whole training level before proceeding box को check करें
typing speed और correctness के लिए निचली सीमा को निर्धारित करें
limits to decrease a level के नीचे:
typing speed को 60 characters per minute और correctness को 60 पर निर्धारित करें
remember level for next program box को check करें
apply पर click करें ok पर click करें
बदलाव जो हमने किये हैं तभी लागू होंगे जब हम नया session शुरू करेंगे
start new session पर click करें और keep current level को चुनें
फिर से टाइप करना शुरू करें
ध्यान दें कि शुरू में speed 0 है जैसे ही हम type करते हैं यह घटती या बढ़ती है
pause session पर click करें जब हम पॉज़ करते हैं typing speed उसी गिनती पर रहती है
typing फिर से शुरू करें
जैसे ही speed 60 से कम होती है ध्यान दें कि speed के as लाल वृत्त पर चमकता है
यह दर्शाता है कि गति निचली सीमा जिसे हमने speed के लिए 60 निर्धारित किया है उससे कम हो गयी है
अब संख्या 4 type करें जो teachers line में नहीं दर्शाया गया है
students line लाल हो जाती है
percentage of the correctness भी कम हो जाता है
क्या आप teachers line में दिए हुए अक्षरों के समूह या अक्षर के बीच spaces देख सकते हैं
अब इस शब्द के बाद मैं space bar नहीं दबाऊँगा
students line फिर से लाल हो गयी है
इसका मतलब है कि spaces को भी this से टाइप करना चाहिए
students line में एक पूरी line टाइप करें और फिर enter दबाएँ
level 3 में बदल गया है
level 3 में क्यों बदला ऐसा इसलिए क्योंकि हमने workload को 1 में निर्धारित किया है
इसलिए जब हमने level 2 की एक line पूरी कर ली और enter दबाया हम अगले स्तर पर चले गये
ध्यान दें कि teachers line में नये अक्षर प्रदर्शित हैं
क्या आप अपने typing session के प्राप्तांक जानना चाहते हैं
lecture statistics पर click करें training statistics dialog box प्रदर्शित होता है
tabs पर click करें और देखें कि यह प्रत्येक क्या दर्शाते हैं
current training session पर click करें
यह general statistics का विवरण देता है typing की गति typing की विशुद्धता और अक्षरों का विवरण जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है
current level statistics टैब current training session टैब में दर्शायी गयी जानकारियों की ही तरह जानकारियाँ देता है
monitor progress टैब आपके typing की प्रगति का चित्रीय विवरण देता है
इस dialog box को बंद करें
आप खुद के शॉर्ट कट कीज़ भी बना सकते हैं
shortcut कीज़ क्या हैं
shortcut कीज़ दो या अधिक कीज़ का समूह होती हैं जिन्हें menu options की जगह keyboard से दबा सकते हैं
lecture statistics को देखने के लिए shortcut कीज़ को configure करें
मुख्य menu से settings configure shortcuts पर click करें
configure shortcuts – ktouch dialog box दिखता है
search box में lecture statistics प्रविष्ट करें
lecture statistics पर click करें custom चुनें और none पर click करें icon input में बदल जाता है
अब keyboard से shift और a कीज़ को एक साथ दबाएँ
ध्यान दें icon अब अक्षर shift + a प्रदर्शित करता है ok पर click करें
अब shift और a कीज़ को एक साथ दबाएँ training statistics dialog प्रदर्शित होता है
बाहर जाने के लिए close click करें
केटच आपको toolbars को कंफिगर करने की अनुमति देता है
मानते हैं कि हम quit ktouch command को icon के रूप में दर्शाना चाहते हैं
मुख्य menu में settings पर click करें configure toolbars पर click करें
the configure toolbars – ktouch dialog box प्रदर्शित होता है
बाएँ panel में option की सूची से quit icon चुनें इसपर double click करें
icon दायें panel में खिसक जाता है apply पर click करें और फिर ok click करें
quit icon अब केthe window में प्रदर्शित होता है
इसी के साथ हम केटच पर इस tutorial के अंत में आ चुके हैं
इस tutorial में हमने सीखा कि कैसे अभ्यास स्तर को बदलें typing की गति और विशुद्धता पर निगरानी कैसे रखें
हमने keyboard शॉर्टकटों और toolbars को configure करना भी सीखा
यहाँ आपके लिए एक नियतकार्य है
configure ktouch के नीचे workload को 2 में बदलिए
complete whole training level before proceeding box को check करें
अब एक now typing session शुरू करें और typing का अभ्यास करें
अंततः अपने lecture आंकड़े जाँचें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
spoken tutorial project team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
आई आई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद